एक बड़ा सारी बिल्डिंग बनी हुई है जोकि सफ़ेद कलर की है उसपे कुछ जालियां लगी हुई है नीचे की तरफ काफी सारे पेड़ है जो हरे कलर के पत्ते लगे है। आस पास काफी सारे पानी है जो कि तालाब है काफी बड़ा सहारा है कुछ पहाड़ दिख रहा है। सामने के ऊपर आसमान दिख रहा है जो फिरोजी कलर का है।

यहाँ पे कथई कलर के पेड़ लगे हुए है। आस पास काफी सारी मिट्टिया पड़ी हुई दिख रही है कुछ पत्थर पड़े हुए दिख रहे है।

जहां हमे नीचे टाइल्स लगे हुए दिख रहे है स्टेज बना है जोकि कत्थई कलर का है ऊपर आसमान दिख रहा है जो कि सफ़ेद रंग का दिख रहा है यहाँ पर पेड़ लगा है जिसमे हरे कलर --

कुछ सीढियां दिख रही है सामने पेड़ लगे है जिसमे हरे कलर पत्ते है ऊपर आसमान है जोकि काले रंग का है यहाँ पे आस-पास काफ़ी सारी खिड़कियाँ दरवाजे लगे हुए दिख रहें हैं सामने कुछ सीढियां दिख रही है।

यह चाट है। यहाँ पे काफी सारे तवे पे टिक्कीयाये रखी हुई है। दो आदमी खड़े हुए दिख रहे है जो की लाल कपड़े पहने है और लाल कैप पहने है। सामने वो रखे हुए है सामने --

यहाँ पर साइड में एक और दुकान है एक और ठेला खड़ा हुआ दिख रहा है आस पास पीछे काफी सारे पेड़ लगे जो हरे कलर के पत्ते --

कुछ कुँडिया दिख रही हैं। सामने नीचे काफी बड़ी सारी बाउंड्री है जोकि सफ़ेद रंग की है। उस पर कुछ कुँडिया रखी हुई दिख रही हैं। आस पास काफी सारे पेड़ लगे दिख रहे हैं। सामने एक लाइट जलती हुई दिख रही है जोकि सफेद रंग की है।

मस्जिद दिख रही है जो कि सफ़ेद रंग की उसमें काफी सारे मीनारे बने हुए हैं सामने कुछ खिड़कियाँ दिख रही हैं जिनकी दो डिज़ाइन हैं बाहर की तरफ एक वाटरकूलर रखा हुआ है।